स्विमिंग पूल दिख रहा है स्विमिंग पूल में बहुत सारी सीढ़ियां लगी हुई दिख रही है उनमें रेड कलर ग्रीन कलर आसमानी कलर पीला कलर दिख --

बोझ यहां पड़ी हुई दिख रही है गिट्टी गिड़ी हुई दिख रहा है जेंट्स दिख रहे है ऑरेंज कलर दिख रहा है व्हाइट कलर दिख रहा है खिड़कियां वगैरा भी --

कचरा वगैरह दिख रहा है खंभे दिख रहे हैं मीटर लगा हुआ दिख रहा है सामान रखे दिख रहे हैं टीन सेट दिख रहे --

दिख रहे हैं गिट्टी पर हुई दिख रहे हैं बालू दिख रहा हैं बादल है ब्लैक व्हाइट कलर दिख रहे हैं आसमानी कलर दिख रहे हैं नीचे की ओर पौधे दिख रहे हैं ऑरेंज --

पिंक कलर ब्लैक - व्हाइट कलर पेड़-पौधे दिख रहे हैं बादल दिख रहे हैं बादल में ब्लैक - व्हाइट कलर दिख रहा है पानी दिख रहा है पत्थर दिख रहा है रोड दिख रहा है।

पहाड़ दिख रहा है जंगल दिख रहा है बादल दिख रहा है बादल में पिंक पीला ब्लैक सिल्वर कलर जामुनी कलर दिख रहा है खेत दिख रहा हरियाली वगैरा दिख रही पेड़ --